नदी झरझर कहती बह रही है और चारों तरफ पहाड़ बने हुए --

बिजली की तारे हैं जो कि काले रंग की हैं आसमान नीले और सफेद बा --

अरियाली भरे पेड़-पौधे हैं पतियों का रंग हरा है आसमान नीले और सफेद बादलों से घिरा हुआ है।

बड़े-बड़े खम्भे लगे हुए हैं आने-जाने के लिए दरवाजें बने हुए हैं जो की सफेद रंग के हैं। आसमान बहुत ही सुन्दर बैगनी और --

सड़क के किनारे दो बड़े-बड़े सफेद रंग की दीवारें बनी हुई हैं और काले रंग का --

तीन मंजिला इमारत बनी हुई है जिसमें नीले रंग के खंबे लगाए हुए हैं।

दीवारों पर सफेद रंग किया हुआ है मिरर्स लगाए हुए हैं और चारों तरफ --

तीन मंजिला इमारत है जिसमें लोहे की खिड़कियाँ बनी हुई हैं और उनमें भूरा रंग किया हुआ है बाहर एक पुलिस वाला खड़ा है।